और्ब एक आधे रंग के हाथ बॉईल है।

पर्दे हैं पर्दे का रंग पिंक और व्हाइट है| काफी सारे गुलदस्ते गुलदस्तों का रंग ग्रीन येलो और रेड है|

और काफी सारे पर्दे लगे है पर्दे का रंग रेड और गुलाबी है और काफी सारे कार्पेट है कार्पेट का रंग ब्लू ग्रे पिंक और स्काइ ब्लू और बैलून है और बैलून का रंग ब्लू है ।

हेड है और हार है और हार का रंग सफेद और लाल है लाइट का रंग गोल्डन है ।

घड़ी है घड़ी का रंग सफेद है और बैलून बैलून है का रंग रेड है| और पर्दा है पर्दा का रंग ग्रीन है और दीवारों का रंग दीवारों का रंग सफेद है ।

ये एक रोड है| रोड में एक बसे खड़ी है| बस का रंग पीला है और --

पेड़ों का रंग हरा ह है और काफी सारे पहाड़ है पेड़ों का रंग हरा है।

काफी सारे पेड़ हैं पेड़ का रंग हरा है| पत्ते है पत्त पत्ते का रंग हरा है।

ई पार्क है पार्क में हरी घास है और काफी सारे झूले झूले का रंग लाल हरा पीला ऑरेंज है काफी सारे पड़े पेड़ का रंग हरा है।

सभी दीवारे है दीवारों का कलर कलर रेड यल्लो और ग्रीन है।